जिसपर मनुष्य का --

एक डंडा है उसमें झंडा दिख रहा है |

रोड दिख रहा है। रोड पर कुछ आदमी खड़े हैं।